मा नजारा बहोत सुंदर दिख रहा है।

और कार भी दिख रहे हैं।

और बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

और यहां कार भी दिखाई दे रहे हैं और बाइक भी दिखाई दे रहे हैं।

लाइट भी लगे हुए दिख रहे--

एयरपोर्ट में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है।

कुछ व्यक्ति जाते हुए भी दिख रहे हैं और--